और घर के बाहर खड़ा एक बाइक भी है जो पल्सर कंपनी का है।

और तोरण द्वार काफी ही अच्छा है फूलों से सजाया गया है इसको देखने से काफी सुंदर दिखाई दे रहा--